यहाँ पे देख रहे है जो की बहुत सारा मछली है जो की पोथियाँ मछली है सुनखी मछली है डोरी है कपाट में सब मछली रखा है |

यहाँ पे देखने में देखिए एक बहुत बड़ा बैंक है।

इ घर में शादी हो रहा हो रहा है बहुत बढ़िया घर का सजावट है।

बहुत तरह-तरह के चुनु मुन्नू हैं बहुत बढ़िया लग रहा है बहुत मस्त सजावट है।

घर के दो-तीन गो गेट हैं एक शीशा के गेट एक के गेट --

वो मस्जिद में देख रहें हैं जो की बहुत सारे --

बहुत सारा गाड़ी लगाया है बहुत बढ़िया सजावट है।

इस में देखिए एक चार-पांच गो कुर्सियां है बहुत सारे मिनर है और उ --

कुर्सी लगा है जो भी अपना फेशियल यूज़ करते --

ये पानी नदी पानी है इसके बाद जो है।

पोस्ट ऑफिस के घर --

यहाँ पर भी दिख रहा है जो की बहुत खूबसूरत समियाना है और समियाना के बीच में वरमाला हो रहा है और वरमाला जो की दूल्हा दुल्हन का बहुत खूबसूरत --

और शासरने झूलने का झूला है बहुत अच्छा लग रहा है बहुत मस्त।

बिल्डिंग के नीचे फोर व्हीलर खड़ा है बाइक है।